मुझे एक आयकर भवन दिखाई दे रहा है आयकर भवन मे काले कलर से आयकर भवन धुले इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट लिखा दिखाई दे रहा है एक सीमेंट की बाउंड्री दिखाई दे रही है उसमे छड़ दिखाई दे रही है छड़ के पीछे--

मुझे एक दुकान के अंदर का सीन दिखाई दे रहा है जिसमे दो कम्पुटर दिखाई दे रहे सामने खुर्ची दिखाई दे रहे है दीवाल मे कुच्छ फुग्गे लगे दिखाई दे रहे है वन प्लस लिखा दिखाई दे रहा है।

मुझे एक दुकान का अंदर का सीन दिखाई दे रहा है। इसमे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है। उसमे एक फोटो रखे हुए दीखा--

यहाँ मुझे बहुत सारे पटाके के खोके दिखाई दे रहे है कुछ छोटे तो कुछ बड़े दिखाई दे रहे कुछ मे कार्टून छपे दिखाई दे रहे है कुछ कम्पास बो--